बूक स्टोर है जो बहुत सारे बूक रखे गए उपर के साइड पे पीने लगाए गए है एक आदमी खड़ा हुआ है जो सफ़ेद रंग का शर्ट और लाल रंग का शर्ट पेहना हुआ है नीचे एक--

कपड़े पहने हुए बगल में एक बड़ा सा बिल्डिंग है सफ़ेद रंग का एक पर्दा लगा हुआ एक पंडाल का जो एक कत्थे रंग का और सफ़ेद रंग की है।

और ऊपर के साइड पर बोर्ड लगा हुआ है जो काले रंग का और सफेद रंग की से लिखा गया है ऊपर के साइड पे के लाल रंग से एक पेंट लिखा गई --

जो सफेद रंग की है सफेद रंग की लाइट जल रही है सलून की दुकान है जो बहुत सारी खुशी रखी गई है कुर्सी में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं सामने टीवी लगा हुआ है जो टीवी चल रहा है।

सब लोग योगा कर रहे है सो सफेद रंग के कपड़े पहने हुए है ताड़ बिची हुई है नीले रंग की और पीले रंग की और पीले रंग की ताड़ बिची हुई बगल मे दीवाल है सफेद रंग का।

और नीले रंग के पैंट पहने हुए है और ऊपर के साइड पे खाली है अगल बगल पेड़ पौधे जो हरी भरी पत्तियां सफेद और नीले रंग की आसमान --

टी_वी चल रही है जो एक बुजुर्ग में टी_वी देख रहे हैं सफेद रंग का कपड़े पहने हुए हैं दीवार का रंग हल्का नीला हैं।